इस दृश्य में सड़क के ऊपर दो भैसें उनके बीच में एक महिला पीछे साइकिल पे एक व्यक्ति आता हुआ नज़र आ रहा है।